और छोड़ बड़े बड़े पौधे हैं जो की गमलों में है।

सामने खेत भी बोया हुआ है जिनके पास बड़े बड़े बरक्स दिखाई दे रहे है।

हां तो दोस्तों मेरे सामने कुछ प्याज बोए हुए दिखाई दे रहें हैं।

बेल और हरे भरे पौधे है जो की एक घर के पास है और सामने वृक्ष है बड़े बड़े जो --

हां तो दोस्तो मेरे सामने एक बुक डिपो दिखाई दे रहा है।

सामने एक मिट्टी का ढेर भी बना है और एक पत्थड़ भी पड़ा है सामने एक छोटा सा भी है।

जो कि अपने पैर को अपने हाथ से पकड़ रहे हैं और सभी का सिर नीचे है क्योंकि वो योगा कर

एक लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे और बच्ची पढ़ रही हैं और --

हां तो दोस्तों मेरे सामने एक कपड़ों का शोरूम दिखाई दे रहा है जिसमें टी शर्ट लोवर पैंट शर्ट --

हां तो दोस्तों मेरे सामने आठ नौ चेयर दिखाई दे रही है।

दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक सैलून की दुकान है जिसमें हमें सेविंग क्रीम वगैरह सेविंग मशीन एक फोन है जो चार्जिंग पे लगा हुआ है।

तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह एक बेडरूम की तस्वीर है जिसके अंदर हमें एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है और एक चाय बनाने वाली मशीन दिखाई दे रही है।

बहुत हरे भरे दिखाई दे रहे हैं अच्छे शानदार दे--